लड़की झूला झूलके नीचे उत्तरी हुई है।

अ वहाँ का एरिया बहोत नीट एंड क्लीन है।

उसके उपर एक घंटा टंगा हैं और सामने एक पोस्टर है।

एक बनारसी साड़ी हैं जो उपर रखी हैं। उसके नीचे जो हैं पिंक साड़ी रखी हैं और फिर उसके नीचे हरी और फिर उसके नीचे लाल साड़ी रखी हैं।

यहाँ पूल के पास एक आदमी काले रंग का खड़ा है।

एक शौचालय घर बना है।

और कुछ लोग जो हैं वह खड़े हैं और कुछ लोग इधर-उधर आ जा रहे हैं।

जो साइकिल खड़ी करके देख रहे हैं। कुछ लोग पैदल हैं जो जा रहे हैं।

और उसके सामने लोगों ने अपनी गाड़िया खड़ी कर रखी हैं।

और चारों तरफ दीवालें उठवा दी है।

और उसकी जमीन जो हैं वो बंजर है।

यहाँ पर कुछ छोटे छोटे घर बने हुए हैं।

ये एक टी_वी फ्रिज और फाइनेंस की दुकान हैं।

यहाँ पर गाड़ी फ्रिज टी.वी. हर चीज़ कीस्टो पे मिलती हैं।

कॉलेज की बालकनी मे पेपर हो रहा है। दो लाइने बन गयी हैं पेपर के लिए और एक लड़का बीच मे बैठा पेपर दे रहा हैं।